बेसिकbasic फंक्शनfunction के स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है इस विषय पर दो ट्यूटोरिटल्स में से एक यह है
इस ट्यूटोरियल में मैं आपको अवगत कराऊँगा कि कैसे अपने फंक्शन function इसके रचनाक्रम बनाएँऔर कैसे एक या एक से अधिक वेल्यूमानोंको इनपुट करें
दूसरा ट्यूटोरियल वापस मिलने वाले मानों पर यानि रिटर्निंग वेल्यूज़ पर होगा
अतः चलिए हम इसके साथ शुरूआत करते हैं मैं यहाँ पर अपने php टैग्सtags बना रहा हूँ मैं अपने रचनाक्रम के साथ शुरू करूँगा जोकि फंक्शनfunction है
और फिर फंक्शनfunction का नाम जोकि myname है
यह संभवतः सरल है कि यहाँ पर बड़े अक्षर प्रयोग किये जाएँ यही वजह है कि आपके पास छोटे अक्षरलोअर केस है फिर बड़े अक्षरों में जाकर फिर से छोटे अक्षरों में आएँ अंततः नये शब्द बड़े अक्षरों से शुरू होंगे
यह पढने में काफी सरल होता है किन्तु मैं हमेशा ही छोटे अक्षर पसंद करता हूँ
फिर आप दो कोष्ठक प्राप्त करने जा रहे हैं अभी इनके अंदर कुछ नहीं है हम यहाँ पर कोई भी इनपुट input नहीं ले रहे हैं और अंदर मैं अपना कोडcode लिखूंगा अतः मैं alex लिखूँगा
अच्छा यदि हम इसे अभी रन करते हैं हम देखेंगे कि कुछ नहीं हुआ
क्योंकि उसकी वजह से हमने हमारे फंक्शनfunction का विवरण दिया है किन्तु हमने अभी तक इसे लाया नहीं है
अब अपने फंक्शनfunction को लाने के लिए हमें केवल फंक्शनfunction का नाम 2 कोष्ठक और लाइनline टर्मिनेटरterminator लिखना होगा
यदि हम इसमें मान रख रहे हैं जिसे संसाधित करने की आवश्यकता है हम उन्हें यहाँ अन्दर रखेंगे
परन्तु अभी के लिए इसकी फिक्र मत करिये हम केवल अपने फंक्शन function को ला रहे हैं जोकि इस कोड के ब्लाक को कार्यान्वित करेगा
अतः चलिए रिफ्रेश करें और आपको यह मिला alex एको हुआ है
अब मान लीजिये यदि मैं 1 लाइन से अधिक के कोड को जोड़ना चाहता हूँ मैं यहाँ पर जितना चाहूँ उतना कोड रख सकता हूँ यह ब्लॉक यहाँ पर इसीलिए है अधिक नई लाइंस को समायोजित करने के लिए चलिए इसे अभी जाँचते हैं
हम देख सकते हैं कि इसने काम किया एक चीज़ और कह सकते हैं कि इसको खुद से लाने की आवश्यकता नहीं है इसे कहा जा सकता है उदाहरण के लिए my name is my name
अच्छा हमें कहना चाहिए कि my name is और फिर फंक्शनfunction को अलग से एकोecho करें
क्योंकि यह एक मान नहीं है संभवतः इसलिए इसने ठीक से कार्य नहीं किया यह एक फंक्शनfunction है इसलिए यह पहले से ही alex को एकोecho करने जा रहा है
अतः नई लाइनline को चुनने के लिए यह समान होगा एकोechoकहकर my name is एकोecho alex ठीक है
अतः यदि हम इसे यहाँ रखते हैं यह कार्य नहीं करेगा उदाहरणस्वरुप आपके पास पूरी तरह से आउटपुटoutput केवल my name is my name होगाठीक है
अतः चलिए इसे वापस यहाँ नीचे लाते हैं इसे रिफ्रेशrefresh करें और आपको my name is alex मिल गया
केवल आपको यकीन दिलाने के लिए कि मुझे कोई शंका नहीं है यदि मैं इसे एक कोडcode से बदलूँ जिसका निष्पादन किया जा रहा था यह इस प्रकार दिखेगा
अतः हम यह नहीं करेंगे ठीक है
अतः यह केवल इसको ठीक से समझने के लिए था अब हम उस तथ्य पर आते हैं कि आप एक फंक्शनfunction को उसके बताये जाने से पहले ही ला सकते हैं यह इसलिए क्योंकि php इसी प्रकार कार्य करता है अतः यदि मैं कहता हूँ कि इसे रिफ्रेशrefresh करें आप यह अपेक्षा करेंगे क्योंकि फंक्शनfunction विवरण देने से पहले ही लाया जा रहा है यही कारण है कि यह इसे ऊपर से नीचे को मान्यता देगा
फिर भी यह इस प्रकार कार्य नहीं करता यदि आप सोचते हैं कि यह अच्छा है तो आप इसे पेज के नीचे भी दे सकते हैं मैं हमेशा विवरण ऊपर देना ही पसंद करता हूँ ताकि फिर से शुरू कर सकता हूँ या वापस ऊपर जा सकता हूँ और देख सकता हूँ कि मैं कहाँ हूँ
किन्तु यह इसके बारे में हैअब इसमें एक मान रखते हैंमैं क्या करूँगा कि मैं लिखूँगा your name is name यह सामने दर्शाएगा your name is और फिर वेरिएबल name मैं फंक्शनfuction का नाम yourname दूँगा
अब वेरिएबल कहाँ से आने वाला है मैं चाहता हूँ कि उपयोगकर्ता इसको इनपुटinput देने के सक्षम हो मेरा मतलब मैं इनपुटinput के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ किन्तु यदि मैं यहाँ पर name रखता हूँ और फिर मैं लिखता हूँ your name alex
यह ऐसे कार्य करता है yourname फंक्शनfunction को लाता है इस वेरिएबल को लेता है इस वेरिएबल को name में रखता है और फिर एकोechoसे वेरिएबल को पढ़ता है यह है जो मैं कहना चाह रहा हूँ
अतः हम मूलतः कह रहे हैं कि your name alex आगे बढ़ने के लिए मुझे इसके लिए एक मान चाहिए खासतौर से एक स्ट्रिंग वेल्यू मान अतः आप यहाँ तक जाइये और देखिये यदि कुछ भी इनपुटinput के रूप में डाला गया है आप देखेंगे कि यह किया गया है यह alex है अतः हमें अब your name is alex मिलना चाहिए
तो हमने कर लिया हम इसे billy में बदल सकते हैं इस प्रकार आपने देखा कि यह कैसे कार्य करता है
ठीक है अब मैं क्या करना चाहता हूँ कि हो सकता है मैं अपने फंक्शनfunction में यह जोड़ना चाहता हूँ कि आप फलाना वर्ष के हैं अतः मैं कह सकता हूँ कि you are age years old
हमें कहना होगा name और age मूलतः हम क्या करेंगे कि एक दूसरा वेरिएबल जोड़ देंगे
अच्छा तो हम यहाँ अर्धविराम द्वारा विभाजित एक अतिरिक्त चीज़ जोड़ रहे हैं यहाँ पर हमें अर्धविराम द्वारा वेरिएबल्स को अलग करने की आवश्यकता है अतः यह फिर से इस वेरिएबल को लेता है इसको यहाँ पर रख रहा है और यहाँ पर एकोecho कर रहा है इस वेरिएबल को लेते है इसको लाते है और यहाँ पर इसको एकोecho करता है
मूलतः यह आपके वेरिएबल का स्वरूप है यह कितने वेरिएबल्स लेता है और इस तरह से आप अपने फंक्शनfunction को कोडcode करते हैं
अतः चलिए इसको जाँचते हैं आपको यहाँ पर एक रिक्त स्थान कि आवश्यकता है मैं इसे पुनः alex19 में बदल सकता हूँ और रिफ्रेशrefreshकरें तो आपको मिल गया
अतः फंक्शन्सfunctions समय बचाने के लिए लिखे जाते हैं यह कोडcode के बड़े ब्लाक्स को लेता है यह एक इनपुटinput ले सकता है यह इसको इस प्रकार संसाधित करता है कि दूसरे प्रकार से बहुत अधिक समय लेता होगा
इसी के साथ हमारा ट्यूटोरियल समाप्त होता है अग्रिम फंक्शन्सfunctionsजैसे वापस रिटर्निंग वाल्यू के लिए कृपया फंक्शन्सfunctions पर दूसरे ट्यूटोरियल को देखें
मैं रवि कुमार आईआईटीबॉम्बे की ओर अब आपसे विदा लेता हूँ देखने के लिए धन्यवाद